और एक रेखा का शेड दिख रहा है।

आस पास बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं और ऊपर बादल भी दिख रहा है।

बांई तरफ घर का सेट भी दिख रहा है और उसके आगे भी दिख रहे हैं।

बाएं तरफ एक छोटा सा शॉप भी दिख रहा है।

कॉलेज का एंट्रेंस भी दिख रहा है।

बहुत सारे चेयर्स टेबल दिख रहे हैं और एक लड़का वीडियो शूट कर रहा है।

व्हाइट बोर्ड दिख रहा है और फैन भी दिख रहा है क्लास पूरा लाइटिंग से चमक रहा है।

आगे डिस्प्ले पर पामलेट्स दिख रहे हैं और तीन आदमी दिख रहे हैं और हेलमेट क्यू_आर कोड भी दिख रहा है।

ऊपर देखे गए चित्र में एक पहाड़ पर एक लड़का टहल कर दिख रहा है।

और पत्थरे भी दिख रहे है और वो लड़का ग्रीन डाल लेकर ठहरा है।

आगे रैंक में नीचे कपड़े जोड़कर दिख रहे हैं शॉपिंग माल पूरा लाइटिंग से चमक रहा है।

माल पूरा लाइटिंग से चमक रहा है।

बास्केटबॉल ग्राउंड भी दिख रहा है।

स्ट्रेट रैक में कोल ड्रिंक दिख रहे हैं बाएं तरफ रैक में आइल्स दिख रहे हैं।

ऊपर दिखे गए चित्र में बेकरी दिख रही है।

आगे एक आदमी ठहर कर है।

और दो बेडा में दिख रहे है और दो सिरहाने भी दिख रहे है।

ऊपर दिखे गए चित्र में लाइब्रेरी और एक ऑफिस दिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।

ऊपर दिखे गए चित्र में एक डैम दिख रहा है।

ब्राउन कलर बॉर्डर भी दिख रहा है।

और पीछे तीन बिल्डिंग भी दिख रहे हैं।

और एक आदमी भी बैठ कर दिख रहा है।

और टेबूल के ऊपर कैलकुलेटर पेन पेपर न्यूजपेपर और मेडिसिन भी दिख रहे हैं।

इनके बाय तरफ दो कप दिख रहे हैं।

और एक माइक भी दिख रहा है और चर्च का सिंबल रेड कलर में दिख रहा है।

ऊपर दिखे गए चित्र में एक रोड दिख रहा है और थोड़े और पार्क करके दिख रहा है और एक कार मेन रोड पर दिख रहा है।

और आसपास बहुत सारा पेड़ दिख रहे हैं।

पोल के ऊपर एक बिल्डर का भी फोटो दिख रहा है और जिम के अंदर एक लड़का भी दिख रहा है।

ऊपर दिखे गए चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है और नीचे एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है।

ऊपर दिखे गए चित्र में एक बास्केटबॉल ग्राउंड दिख रहा है वहां बहुत सारी लड़कियां दिख रही हैं और दो बस भी दिख रही है।

ऊपर दिखे गए चित्र में मंदिर दिख रहा है मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं।

मूर्ति भी दिख रही है बहुत सारे पैगामी दिख रहा है।

वाईफाई सिंबल भी दिख रहा है और भी दिख रहे है।

दाहिने तरफ एक लड़का बाइसेप्स मार रहा है और आगे चेस्ट मशीन और बहुत सारे मशीन्स दिख रहे है।

पीले कलर के थामा दिख रहे हैं।

के दाहिने तरफ प्रसादम काउंटर पे एक छोटा सा टेंट दिख रहा है।

में एक टिकेट काउंटर दिख रहा है और टिकेट काउंटर के आगे एक लड़का ठहर कर है और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

पोस्ट ऑफिस पिन कोड नंबर फाइव ट्रिपल जीरो नाइन सेवन --